बैंक है बंधन बैंक --

ये झील है। पानी भरे हुए हैं।

और ये ज्यादा हाइट है।

यहाँ बाल काटे जाइत हैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

ये घर दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुन्दर है। यहाँ पे दो मंजिला घर है और है।